सामने एक होटल है जो की चार मंजिला है चारों मंजिलों में बोल कन्हैया बनी हुई है बालकनी में स्टाल के पाइप लगी हुई है नीचे गेट बनाएं जो की लकड़ी का बना हुआ है।

कुछ एल्बम सफेद कलर के हैं कुछ काले कलर के हैं कुछ पीले कलर के हैं बगल में एक कुर्सी पर लगा है जिसके बीच में एक डाइनिंग टेबल है जिसके दोनों-दोनों और कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं।

एक मैदान हैजिसमें चारों तरफ हरी हरी घास हैं सामने कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और एक फिसल पट्टी हैजो की सीमेंट से बना हुआ है उसमें एक और सीडी बनी हुई है एक जानवर है ।